एक आदमी है जो कि चद्दर पहने हुए है।

ऑरेंज कलर का दीवार है और साइड में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

स्लाइड में स्लाइड कर रहे हैं। गेम्स खेल रहे हैं।

फोटोज लगा लगाए गए है मॉडल्स का हेअर स्टाइल लुक का --

यहां पे झील का एक फोटो दिखाया जा रहा है जहां के ऊपर से छोटा सा एक ब्रिज गया हुआ है।

यहां पे कुछ लडके हैं कुछ लड़कियां हैं।

पकौड़ा या फिर पनीर टाइप का कुछ है। एक अ --

सामने बोहोत सारा मछली भी रखा हुआ है एक ग्रीन कलर के पैकेट के उपर।